ग्राहक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र है।

अगल- बगल झाड़ी एवं कई प्रकार के यहाँ चीजें हैं।

इसमे पेश्ज्रर अपने जहां जाने का रहता है तहाँ उसके बदले पेसे चुकाने पड़ते है।

चारो ओर घूमने में इसका दृश्य बहुत ही अच्छा --

एवं अपने आवश्कताओं को पूर्ति एवं हवाई अड्डा में उड़ान भरने के लिए।

यह एक बस गाड़ी है जो कि और इधर बगल में ऑटो दिखाई दे रहा है। जो कि कई लोग एवं कई पैसेंजर बस एवं ऑटो में जाते हैं।

और अगल-बगल में बहोत साफ-सफाई है और दो बोतल पानी है।